इस घर के ऊपर एक पोस्टर लगी है।

इन कमरो में कुल दो कमरे खुले हैं एक कमरे में शटर बंद है।

सभी टेबल के लिए एक स्पेशल लाइट लगी हुई है लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है लाइब्रेरी में गुलाबी रंग के कपड़े लगे हुए हैं।

इस रेस्टोरेंट के टेबल पर जाम के बोतल रखे गए हैं।

यह एक फंक्शन की तस्वीर है फंक्शन में बहुत सारे लोग खड़े हैं।

इस व्यक्ति के पीछे एक मूर्ति लगी हुई है मूर्ति ने अपने हाथ जोड़ कर खड़ी है।

एक ग्राउंड की तस्वीर है इस ग्राउंड में बहुत सारे पंडाल बनाए गए हैं सभी पंडालो में बहुत तरह की लाइटें लगी गई लगाई गई है।

इस रूम के आगे एक छोटी सी डेस्क भी है जिसमें लिखा हुआ है ऐंततीन सेवंती ।

बेंच के ऊपर बहुत सारी चीजे को रखा गया है बेंच के ऊपर एक फूल की माला भी रखी गई है।

यह एक ग्राउंड की तस्वीर है इस ग्राउंड में खेलने के लिए और एक्सरसाइस करने के लिए बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं।

एक ऑटो जा रही है तो अह इस तस्वीर में एक स्कूटी भी जा रही है।

दुकान के आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं।